यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे और घास लगे हुए हैं।

इस बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे इटे भी रखे हुए हैं।

इस मस्जिद के छत पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

इस मस्जिद में बहोत सारे लोग आए हुए हैं।

इस मंदिर के बाहर बहोत सारी दुकाने लगी हुई हैं।

इस मंदिर के बाहर बहुत सारी फूलों से सजावट की हुई है।

इस मंदिर के बाहर एक वो पीले रंग का स्तंभ बना हुआ है।

यहां पर सारे बच्चे चार्ट पेपर से कुछ बना रहे हैं।

बिल्डिंग के गेट के बाहर एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है।

इस होटल के गेट में शटर लगा हुआ है।

यह तस्वीर किसी दुकान की है इस दुकान में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यह दुकान मोबाइल का है इस दुकान में एक ब्राउन कलर का चेयर रखा हुआ है।